ये हम देख सकते है कि एक इंसान अपने हाथ पॉकेट में हाथ दिए फोटो खिंचाने के पोज में खड़ा हुआ है।

ये शायद कोई ऑटो स्टैंड है जहां पे एक ऑटो दिख सकता है जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यह ऑटो इसके पीछे भी कई अलग ऑटो खड़े हैं जो की स्टैंड जिनका नंबर इसके बाद आया होगा।

यहां पे अलग अलग चाय के साथ अलग अलग सामान भी बेचते हैं।

शायद जहां पे पकौड़ी या फिर और भी अलग अलग खाने के पदार्थ बेचे जाते है।

ये कोई ग्रॉसरी शॉप है जहां पर लगभग सब कुछ पाया जाता है।

ये शाम का वक्त महसूस हो रहा है।

ये बहुत खराब रस्ता है।

यहां पे कई लोग दिखा रहे है और सामने एक मटका भी है।

ब्लैक कलर की पैंट भी पहनी है।

इसके ऊपर भी सोलर पैनल भी लगे हुए है।

जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती होगी।

ये एक बस स्टैंड की तरह प्रतीत हो रहा है जो कि अभी रात का वक़्त है।

हम ये देख सकते है कि यहां पे बहुत से लोग खड़े है।

ये काफी बड़ी एक भीड़ है।

यहां पे हम चार चेयर देख सकते हैं।

इधर हम देख सकते हैं कि ये पंजाब नेशनल बैंक है।

ये बैंक काफी बड़ा सा दिख रहा है जहां पे लोग अपना खाता खुलाने खोलने के लिए भी आते होंगे।

यह हम देख सकते हैं कि यह एक रास्ता है।

जहां पे लोग सफर कर रहे है हम कई सारी गाड़ियां ऑटो बाइक ये सब भी देख सकते है।

बच्चे पढ़ने आते हैं और टीचर पढ़ाने आते हैं।

मे एक छोटा सा घर घर की तरफ स्कूल भी है।

इधर सामने एक पार्क की तरह बनाया भी हुआ है जहां पे बच्चे खेल कूद सकते हैं।

में अभी भी बहुत काम बाकी है।

ये एक ग्रामीण बाजार की तरह नजर आ रहा है।

अभी अभी यहां पे बारिश हुई है क्योंकि बाहर रस्ते पे पानी है।

बाहर काफी अ बहुत से पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

ये एक मरीन पैराडाइज पेट शॉप लग रहा है जहां से लोग अपने लिए अपना जहां से लोग अपने पेट्स के लिए सामान खरीद सकते हैं जैसे की बेल्ट या फिर खाने का सामान।

जोकि सफेद रंग का है और ये काफी बड़ा सा बिल्डिंग भी है और काफी सुंदर भी है।

ये पेंटिंग काफी सुन्दर है।

बाहर दरवाजे में हरे रंग का लाइट भी इस्तेमाल किया गया है।

ये एक हॉस्पिटल है जिसमें लिखा है खवाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ।

इसके सामने एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है।

इसपे इलाज भी इसपे इलाज किया जाता है लोगों--

एक घर जो है वो टीन के बने हुए हैं और काफी सस्ता है।

इसमें देख सकते है कि ये एक फील्ड है जहां पे बच्चे या फिर कोई फुटबॉल का खेल खेल रहे हो --

यहां पे फुटबॉल का एक खेल चल रहा होगा जहां पे बहुत से प्लेयर्स खेल रहे है।

चॉकलेट या फिर कई अलग अलग सामान रखे हुए हैं।

जो कि रास्ते के पास है।

यहां पे लाइटिंग भी की गई--

साथ में और भी चीजें है जैसे की मोमबत्ती एप्पल कॉर्नफ्लेक्स और भी कुछ किताब है और अलग अलग पदार्थ के बिस्किट रखे हुए हम देख सकते हैं।

यह हम देख सकते कि ये एक ग्रामीण पंचायत है जिसके बाहर साफ सफाई की जा रही है हम इसमें दो औरतों को देख सकते--

एक इंसान अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहा है तो दूसरा इंसान ट्रेडमिल पे खड़ा भी दिख सकता है।

ये कोई टाउन का अं अं पिक्चर प्रतीत हो रहा है।